है जिसके बाहर एक स्कूटर खड़ा है और कुछ आदमी--

यह एक बहोत बड़ा हॉल है जिसमें बहोत सारी कुर्सीयां लगी --

यह एक बहुत बड़ा होटल जैसा दिख रहा है यहां पर बहुत--

यह एक मंदिर है इसकी अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं।

इसके आसपास बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

मस्जिद के बाहर बहोत सारे लोग खड़े हैं जोकि नमाज़ पढ़े फिर जा रहे हैं।

यह एक सब्जी की दुकान है जिसमें एक लड़का सब्जी बेच रहा है।

जीसकी कपड़ों का रंग नीला और काला है।

यह एक बहोत बड़ा घर है।

इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं।

और जूते काले हैं शॉक्स सफेद हैं और बोर्ड लगा है।

और इसमें तरह तरह की लाल हरी कुर्सियां लगी हैं ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी लाइटें भी हैं।

यहां पर एक सेंटर टेबल लगी है जोकि लकड़ी की है इसके आगे दो स्टूल रखी है।